यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये एक होटल का रूम लग रहा है।

और घरेलु चीज़े भी दिख रही है यहाँ पे भी रखी है सब टूथपेस्ट वगैरा है।

गाइस ये पेंट वगेरा भी दिख रही है और सब अपने पेंटिंग वगेरा भी कर रहे है कागज़ पे कुछ चित्रकारी कर रहे है वो सब --

स्टिक वाल स्टीकर भी लगा हुआ है। यह लड़की का दिख रहा है और एक बगल में बॉल भी रखी है।

है लाल पीली गुलाबी हरी पत्तिया बोहोत अच्छा है।

और बहुत सारे पेड़-पौधे गिड़-उड़ गए है यही से दिखाई दे रहे है शुतूरमुर्ग टाइप का दिखाई दे रहा है हमे --

यहाँ पे बहुत सारे झूले दिखाई दे रहे है लोगो के एंटरटेनमेंट के लिए।

ये कहीं का रास्ता दिखाई दे रहा है किसी के घर की तरफ जा रहा है।

इंजन उसका दिखाई दे रहा है एक हेडलाइट भी दिखाई दे रही है।